और एक सीडी सी रखी है खड़े होने की।

और बराबर में आदमी खड़ा है और वो कोट पैंट पहन रहा है और जूते पहन रा--

यहां पर बैंक है बैंक बराबर में बैंक के सामने एक आदमी खड़ा है बहुत सारे आदमी लेडिस है बहुत सारे आदमी है।

यहां पर एक दुकान है शीशे वाली और--

और बरबर में वो जाल सा है।

यहां पर एक दुकान है दुकान के ऊपर टीन सी है।

और मास्क लगा रखा है बहुत सारे अ लौंडे से बैठे हैं।

एक टक मे उसमें टैंक में पानी है और यहां पर एक ट्रक सा खड़ा है।

और नीचे से गाड़ी हल्की सी उठ रही है और एक आदमी--

और वो बराबर में बहुत सारे मशीन सी रखी है दो एक--

और यहां पर बर्तन मांजने की साबुन सी रखें है और बहुत सारा सामान रखा है।

यहां पर गाल्डन है गाल्डन के बराबर में एक गेट है लाल कलर का उस पे एक मेज सी बिछ रही उसपे फूल धरें है दो सोफे से पड़े है उन --

उसके बराबर सामने साइकिल सी खड़ी है बोर्ड से लग रहे हैं।

दो चौखट पड़ी है और खड़ी है।